बड़ी सी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। पास से में एक पॉवर हाउस है।

रूम नज़र आ रही है रूम में एक दीवाल है दीवाल के ऊपर शीट पे कुछ लैपटॉप या और कुछ बाजे रखे हुए हैं।

और कुछ फौदे हैं जो गमले नजर आ रहे हैं और ऊपर से नीला व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉप मे कुछ टेबुल पड़ा हुआ है और नीचे चेयर पड़ी हुई है और पीछे का-कालीन लगी हुई है।

टेबल पे कुछ चांदी की थालिया आरतियाँ जैसी रखी हुई है और पास में कुछ आलमारी में कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं।

वहाँ पे कुछ मु अ अ गमले से है जो गमले में व ये पिक कलर के फूल और एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आ रहा --

ड़ियाँ नज़र आ रही है चिड़ियाँ बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है नीचे हरे कलर की जलकुम्भी दिखाई दे रहे --

छ व्यक्ति जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी बाइके हैं और कुछ फोरव्हीलर भी है और ऊपर से नीला आसमान है पास में कुछ घास फूस भी खड़ी हुई है।